इस फोटो में मुझे कुछ फाइल दिखाई दे रहीं--

यहां मुझे दो कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक बोर्ड दिखाई दे--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

यहां मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है।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

फोटो में मुझे एक शीशा दिखाई दे रहा हैं।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

यहां मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।